इस चित्र में हमें एक मंच दिखाई दे रहा है यहां पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक बस स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें आर_के फार्म दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें टाउन नॉर्थ पोल की दुकान दिखाई दे रही है।